यह एक मजार जैसा कुछ दिख रहा है इसमें लाइट बहुत सारी लगी हुई है लोग लोग की चहल पहल इसमें दिखाई दे रही है लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं ।--

ये एक कार गैरेज है।

यहां पे सेकेण्ड हैण्ड कार सब मिलती है और रिपेयरिंग शॉप भी है।

इसमें पानी जमा हुआ है खेतों के बीचो-बीच थोड़ा सा बहुत ही--

बारिश का मौसम है हाईवे थोड़ा सा गिला हो रखा है अगल-बगल नदी बनी हुई है पेड़-पौधे बोहोत सारे है इसमे--

यहा पे बहुत सारी बाइक्स लगी हुई है कार लगी हुई है।

इसका गेट ब्लैक कलर का इसके अगल-बगल मे पेड़ पौधे बोहत सारे हैं खूबसूरत रंग-बिरंगे फूल यहाँ देखने को मिलते हैं हमेशा।